दो तीन खम्बे दिख रहे है एक पिले कलर का लाइट दिख रहा है एक सफ़ेद कलर का लाइट दिख रहा हैं।

फॉरजी लिखा दिख रहा है कांच का एक दरवाजा दिख रहा है।

दो आ विंडो दिख रही है विंडो मे खंभे लगे हुए है दिख रहे है एक पुलिस वाला दिख रहा है।

और हरे कलर की सटर लगी हुई दिख रही है एक दरवाजा दिख रहा है एक खटिया रखी हुई दिख रही है रूम में --

खिलाड़ी हरे और ऑरेंज कलर के ड्रेस में दिख रहे है कुछ लड़के खड़े हुए दिख रहे है।